और बहुत सारे लोग रोड पर चल के जा रहे हैं।

और यहाँ पर गोल टेबल रखा गया है टेबलों के साथ बहुत सारी कुर्सियाँ रखी गई हैं।